और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स हैं जो दिखने में बोहोत सुंदर व आकर्षित हैं।

होटल के आसपास लोग दिख रहे है यहाँ पे बाइक्स खड़ी हैं एक लड़की इ-स्कूटी-की पे बैठी हुई है एक लड़का होटल की तरफ जा रहा है।

जो आर्डर बना है। ये ऑरेंज कलर का है। इसपे कुछ हमें ई घरेलु व जरूरतमंद सामान रखा हुआ है जो लोग शॉपिंग के लिए आते --

हॉल में जो टाइल्स लगी हैं वो ब्राउन कलर की है और उसकी जो दीवारें हैं वो वाइट है और इसमें जो सामान हैं वो काफी ही हमें स्ट्रांग लग रहा है।